काम बता रहा है जो व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ है।

ये खेल रहे हैं यहां पर फर्श भी है यहां पे ये घर है और --

और यहां पर मि मिट्टी खास सब चीज है।

यहां पर ऊपर ब्लू कलर का लाइट दिखाई दे रहा है यहां पे चार --

यहां यहां एक हॉस्टल है जहां बहुत सारे गेट और खिड़कियां हैं यहां पे --

बिहार पब्लिक इसतूल तथा फोटो भी है यहां पर एक ब्रेंच है।

यहाँ लड़के अप अपने कार्ड बोर्ड से अलग-अलग तरीके से क काम कर रहे है यहाँ पे --

रहे हैं और यह यह एक पिक्चर है पिक्चर में बहुत सारी चींज है और --

वह इधर-उधर देख रहा है इसके बगल में एक --

यहाँ एक पार्क का सीन है जहाँ एक लड़का थाड़ा और यहाँ दो झूले हैं।

जहाँ पेड़-पौधे भी है और यह नदी के किनारे --

सब एक मार्केट का सीन है जिसका नाम सब्जी मार्केट है वहां --

मकान है जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और वहाँ एक --

वहाँ एक आदमी मास्क लगा के बैठा है वहाँ दो-दो तरह की जहाँ बहुत सारी --